आया करते हैं पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छे मंदिर हैं बहुत ही बड़ा इलाका में फैला हुआ है ये मंदिर--

अक्सर लोग कि यहाँ बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में आते हैं और यहाँ पैसा उठाते जमा करते हैं।

जहाँं कपड़ा दुकान में रखा गया है यह मूर्ति--

बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में स्टेशन में आए करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।

और लोग अक्सर यहाँ रहा करते है रैड में लेकर इस बिल्डिंग में बहुत ही नामी बिल्डिंग है ये --

और यहाँ बहुत ही सुंदर-सुंदर अच्छे-अच्छे डिजाइनिंग के टोटो यहाँ पाए जाते हैं अक्सर लोग यहाँ दूर-दूर से टोटो खरीदने के लिए आते हैं।

बहुत ही नामी सैलून है बहुत ही अच्छे यहाँ बाल काटते हैं तरह-तरह के डिजाइनिंग के यहाँ बाल काटे जाते हैं एवं कम दाम में भी--

अक्सर लोग यहाँ बहोत ही ज्यादा जनसंख्या में आए करते हैं एमन खरीदते हैं यहाँ साड़ियां एवं कई तरह के वस्त्र भी यहाँ पाए जाते हैं।

और कई तरह- तरह के यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई है इनकी स्टाइलिश देखने में बहुत ही सुंदर हैं।

यहाँ पकौड़ा जिन्हे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

आज बोहत ही ज्यादा लोग अक्सर योगा करते हैं योगा करने से हमारे--

पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि सभी प्रकार के यहां खाना मिलते हैं जिन्हें कहते हैं सब कोई और बहुत ही स्वादिष्ट एवं बहुत ही--